उस पार्क की सुन्दरता बहुत ही बढ़िया सुन्दरता है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे बहोत सारे लोग एकत्रित होते हैं और यहाँ पे घूमते भी हैं बहोत अच्छी जगह है ।

जैसा की आप देख सकते है यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो की एक शिक्षिका जो की इन बच्चों को पढ़ा रहे है इनी बच्चे शिक्षिका से बहुत ही खुश होके पढ़ते हैं क्यूँकि यहां पे बहुत सारे बच्चें हैं।

जैसा की आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग हैं जिसके आगे बहुत सारा पानी भरी हुई है जो की बारिश का मौसम का पानी है यहां एक बस है जो की यहां पे फस चुकी है कार भी है जो की यहां पे फस चुकी है।